जैसे कि हम इस तस्वीर मे देख सकते है कि यह एक शोरूम का तस्वीर है जहां पे बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है कुछ गाड़ियां हरी है तो कुछ नीली है तो कुछ लाल भी नजर आ रही है।

जैसे कि इस तस्वीर में हम देख सकते है कि यह एक पोस्टर लगा हुआ है जहां पे दो बड़े-बड़े पोस्टर नजर आ रहे है जो कि वॉर मूवीज के है और एक बड़ा तो एक छोटा है।